इस तस्वीर में एक पुस्तक भंडार को दिखाया गया है।

इस फोटो में किसी चीज का कंस्ट्रक्शन मतलब में बना बनाने की विधि दिखाई जा रही हैं।